यहाँ पे एक स्टेशन है और यहाँ पे कुर्सियां भी पड़ी हुईं हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर टाइप का है इसमें ग्रीन कलर का मंदिर लग रहा है और बहुत बडा गेट भी है। बादल भी दिख रहा है।